ये एक जिम घर का रुम है जिसमे बहुत सारा चेयर पे बैठे हुए हा जिम करने का कोशिश कर रहा और जिम बहुत सारा दिखाई दे रहा।

एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे टिकट कटाने के लिए बहुत सा भीड़ लगा हुआ है।

सामने में ए_टी_म बूझा रहा है उसमे एक लड़का अंदर में गुसे हुए है घे एक दरवाजा में निकल रहा है कुछ हाथ में लिए हुए है और आगे बढ़ रहा है।

जिम करने वाला हे उसका पीछे से भी एक लड़का दिखाई दे रहा है जो जिम कर रहा है निचे मे टाइल उईल लगा हु--